ऊपर आसमान में काले बादल छाए हुए है कुछ बिजली की तारे भी है।

सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग का कलर --

सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग पर ब्राउन --

साइड में कुछ झुगड झोपडी भी दिखाई दे रही है आसमान भी दिखाई दे रहा है।

खिड़की व दरवाज़े नज़र आ रहें हैं।

साइड मे एक दो गेट बने हुए है।

साइड में एक छोटा बैनर लगा हुआ है।

कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे है।

बिल्डिंग मे भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

बिल्डिंग के साइडो में बोहत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

कुछ बाइक व स्कूटी बाहर की साइड खड़ी हुई हैं।

ऊपर आसमान नज़र आ रहा है।

कलर का बहोत बड़ा बोर्ड नज़र आ रहा है।

सामने बोहत सारी कुर्सियाँ दिखाई दे रहीं हैं।